झूले खेलने के लिए बच्चों के लिए झूलने के लिए।

और दि एक व्हाइट कलर की दीवार सी दिख रही है एक बोर्ड लगा हुआ है एक नंबर लिखा हुआ है उसे पे ।

उसके ऊपर छत वाले पंखे लटके हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे जो दिखाई दे रहा है मुर्गा फार्म ।

जैसे ये सोफे पड़े हैं तो इस पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं कुछ लोग उधर खड़े हैं।

एक व्यक्ति साइकिल को पीछे चेक कर रहा है देख रहा है और ये कारखाना --

कुछ व्यक्तियां खड़े हैं जिनपे की रंग बिरंगी कलर कलर की लाइटा जल रही है।

और तीन-चार खिड़कियां बनी हुई हैं छोटी छोटी फुलवरियाँ लगी हुई हैं नीचे फर्श डला हुआ है ।

ऐं जिसमें कांच जैसी चमक रही है लाइनिंग लाइनिंग कुछ थमले बने हुए हैं।

मैं देख पा रहा हूं एक व्यक्ति ई रिक्शा जो रिक्शा ई रिक्शा होता है बैटरी वाला उस।